दोनों को सुन्दर लाइटे से सजाया गया हैं इसके पीछे भी कुछ लाइटे लगी हुई दिख रही हैं।

पेड़ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं शोकेस के ऊपर ऊपर कुछ बरनियो चॉकलेट बिस्कुट रखे हैं।

मेटाडोर खड़ी हुई दिख रही है रोड के पास एक बड़ा- सा ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के नीचे लोग आते -जाते दिख रहै हैं।

नीचे टी पॉजिटिव दिख रहा हैं नीचे और बेंच रखी हुई हैं बेंच पर एक --

ये एक खेत- सा दिख रहा है हमें कुछ घास- फुस पड़ा हुआ हैं।

घर दिख रहे हैं घरों के पास में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ दिख रहा हैं।

दुकान के ऊपर एक झंडा लगा हुआ हैं दुकान के पीछे बड़े से पेड़ दिखाई दे रहा हैं ग्राहक सेवा केंद्र की हमें ये दुकान दिखाई दे रही हैं।

ऑफिस में बॉक्स बने हुए हैं अंदर बैठने के छोटे-छोटे से केबिन बने हुए दिख रहे हैं।

रोड के अंदर हमें साइड में एक ला सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है बड़ी -सी लम्बी एक सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

ओ ओ चर्च के दोनों साइड बड़े-बड़े से पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बोहोत सुन्दर सा चर्च दिख रहा हैं।

ये पहाड़ी हैं बड़े-बड़े चट्ठाने रखी हुई दिख रही हैं ये पहाड़ी एरिया हैं कुछ पेड़-पौधे लगे हैं।